बहोत कलर कलर की चीजे इसमें दिख रही है।

किचन के ऊपर बहोत सारे सामान रखा हुआ है किचन में--

हूं दो ट्रेन की पटरी भी दिख रही है और दो तरफ--

यहां पर एक गुफा भी दिख रहा है उसमें ये शेर भी बैठा हुआ है और पत्थर भी दिख रहा है।